इस चित्र में सामने बड़ा सा नदी है।

नदी में बहुत सारे पक्षी लोग हैं।

इस चित्र में एक सैलून है।

ऊपर की साइड छज्जा में गेंदा का फूल लटकाया हुआ है।

सामने बड़ा सा मैदान है जिसमें छोटे बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में सामने दो तल्ला बिल्डिंग है।

राइट साइड बहुत सारा तार लटकता हुआ है।

रोड के आगे एक बड़ा सा गड्ढा है।

चारों ओर छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं।

दिवाली में दो रेक है जिसमें काले कलर का मार्बल लगाया हुआ है।

दुकान में दो बड़े बड़े गमला रखा हुआ है।

बड़ा सा बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है हैस्टैग सुगा बांध वॉटरफॉल --

इस चित्र में एक जगह है जिसमें गड्ढा किया गया है।

इस चित्र में सामने दो दुकान है।

बहुत सारा व्हाइट कलर का पूल खड़ा है।

और उसके बगल में एक काले कलर का छोटा सा ओटा है।

छोटे बडे पेड लगे हुए है।